हमने टेबल सब बहुत अच्छे से अरेंज कर के है।

और उसका आगे में हमें बहुत सारा बंबू ही दिखाई दे रहा है जो केवल क्रीम कलर का है।

यहां में बहोत से आदमी लोग मास्क पहन के दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में से देख के लग रहा है कि हमे एक पहाड़ का मेन बनाया हुआ हैं।

ये जो पिक्चर है वो एक ऑफिस का है।

ये जो एक रस्ता का लिया गया है जोकि हमे एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

और प्लस यहां में बहुत सारा अंडरवियर भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर में एक लाइट भी जलके दिखाई दे रहे हैं।

और साथ ही साथ ये हमें बहुत सारा जंगल सब दिखाई दे रहा है।

कसाइट में बहुत सा सब काम किया गया है।

और लेफ्ट में भी बहुत बड़ा सा जगह है।

सामने में भी एक काउंटर दिखाई दे रहा है।

और ये जो बिल्डिंग है उसका कलर जो वाइट और येलो कलर का है।

सामान सब दिखाई दे रहा है।

जो कि इसका स्किन का स्किन कलर का चेयर है। और उसका आगे तक मे बहुत सारा टॉवेल सब रखा गया है।

ये कुछ फेस्टिवल चल रहा है इसको वहां से लेफ्ट टर्न में रोड का लेफ्ट तरफ में बहुत सारा आदमी लोग इसे घूर के देख रहा है।

कोई नहीं एक फ्रेंड दिखाई दे रही है और जो व्हाइट कलर का है और ये जो घर का कलर जो है व्हाइट है।

जहाँ में बहुत सारा सामान सब दिखाई दे रहे हैं।

ज्यादातर यहां में खिलौना है दिखाई दे रहे है दे रहे हैं।

और लह तह मे बहोत सारा शैंपू सब सब दिखाई दे रहा है और ये जो पिक्चर है रात में लिया गया है।

ये जो पिक्चर है वो एक रस्ता पर लिया गया है जो कि के टाइम पर लिया गया है।

में बहुत सारा आदमी लोग वहां में ऊपर में पहाड़ में ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है।

ये जो पिक्चर है वो एक पहाड़ का एक बहुत ज्यादा सा घर दिखाई दे रहे--

की ब्लू कलर का है और यहां मे जो ग्रीन कलर का पेंट किया गया है वॉल में।